एक बड़ी सी पिंक कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे काफी सारे दरवाजे दिखाई दे रहे है एक बड़ी सी व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे बहुत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं।

ये फूल बहुत दूर तक फैले हुए है बड़े -बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमे वाइट कलर के छोटे-छोटे फूल आ रहे है यहाँ से आसमान काफी सुंदर लग रहा है यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कलर का पेड़ भी दिखाई दे रहा है ।

गेट के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है गेट के ऊपर काफी सारे तार दिखाई दे रहे है अंदर की साइड काफी बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ से आसमान का रंग काफी खूबसूरत लग रहा है।

दुकान दिखाई दे रही है दुकान के बाहर एक आदमी दिखाई दे रहा है उसके पास एक झाड़ू पड़ी है ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

यहाँ पर बहुत सारे जाल दिखाई दे रहे है काफी सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक बड़ा सा आ-- बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा--

शेर बैठा हुआ दिखाई दे रहा। यहां पर बह सारी छोटी-छोटी घाँसें दिखाई दे रही। यहां पर बड़ा सा खाली मैदान दिखाई दे रहा चारों तरफ उम चारों तरफ उं बड़ी सी जाली लगी हुई है।

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसमे कुछ माइक लगे हुए है ऊपर सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग की दिवार पर काफी सारी काई जमी हुई है दिवार काफी गन्दी हो रही है।